लाइट लगा हुआ है मिरर के सामने यह लोग अपना डांस का परफॉर्मेंस कर रहे हैं।

डोर लगे हुए हैं और हर विंडो ओपन है इसमें ऊपर में बिजली का तार गया हुआ है।

एक व्यक्ति नीचे बैठ के अपने ऑटो को देख रहा है और दूसरा एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और--

बहुत सारी मछली है जिसमें वैरायटी आफ मछली दिया गया है।

इस पिचर में एक रूम में बहोत सारे लोग--

कुछ लोग इसमें सब्जी बेच रहे हैं और कुछ लोग यहां सब्जी खरीद रहे हैं।

अलमारी का कलर जो कि ब्लू कलर का है इसमें एक स्टीकर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने दुकान दिखाई दे रहे हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के समान दिखाई दे रहे हैं और एक कार्टून का बॉक्स दिख रहा है।

टेबल अरेंज हुए हैं साथ ही चेयर भी अरेंज हुए हैं।

जिसमें दूर में एक अंकल खड़े हुए हैं जो कि व्हाइट कलर के--

और इस यहां पास बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं जो की डैम की ओर देख रहे हैं और साथ ही साईड में एक दुकान हैं।

स्कूटी में खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो कि स्कूल की तरफ जा रहा है और एक बाइक में बैठा हुआ है व्यक्ति जो कि साइड में--

सुंदर लग्जरी कपड़े के दुकान को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं सामने एक--

कुछ पोस्टर लगे हुए हैं एक--

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है और सामने एक बिल्डिंग खड़ा हुआ--